इनमें से कुछ लोहे की पाइप और एक लोहे की सीढ़ी भी है।

जो कि गाड़ियों का सामान है।

यहां पर कुछ मोमबत्तियां जगाई--

और कुछ कपड़े टांगे हुए हैं।

और वह आपस में बातें कर रहे--

कुछ जो कि खड़े हैं और सामने कुछ समान रखा हुआ है।

में से एक आदमी खड़ा है और उसने--

जिसमें कुछ फल रखे हुएं हैं और यहां--

पर कुछ लोग भी खड़े हैं।